ये मंदिर पर लोग जाण लग्यां भैर औण लग्यां ये मंदिर का भैर तीन-चार छोरी खड़ी हुईं तौंका झोला डाल्यां और यु मंदिर का अगल-बगल झंडा लग्यां।

हमें बस अड्डा दिखेन नइयों ये बस अड्डे पर लाल-लाल बस दिखेन नई और छेकी लोग दिखेन नहिया आस-पास और बस अड्डा का सामने हमें दुकान भी दिखेन नई।

कॉलेज का सामनि हमें मैदान दिखेण लग्युं जै फर थोड़ा-थोड़ा घास लगीं एक डालू लग्युं कॉलेज क मैदान पर एक मनखी हिटेण लग्युं कॉलेज क पैथर हमें सुंदर पहाड़ दिखेण लग्यां ज्यों पर हरयां-हरयां डाला लग्यां।

सामने हमे अलमारी दिखेण लगीं और सिसा दिखेण लग्युं।

यखा हमे एक बगीचा दिखेण लग्युं अर ये बगीचा फर ईंट कु कुछ डब्बा टाइप कु बण्यु और यु डब्बा का निस एक छोटी सी गुफा कर बणी।